ये बहोत ही को लग रहा है। नीचे इन टेबल पे दिया गया है। ये बहोत ही सुंदर देखने को लग रहा है। काफी सारी मूर्तियाँ पे लगी हुई हैं। बहोत ज्यादा है।

यह खाफी सारे मंदिर है और यहा पे बोहत सारे गेट भी दिखने को मिल रहे है खाफी फुलवाड़ी भी लागाई गयी है जो की बहुत ही अच्छी तरह से देखनो को मिल रही है बहुत ही सुद्नर और भव्य पूर्ण लग रहा है ये।

सामान है जो की यहाँ पे बिस्कुट चॉकलेट ब्रेड नाशपाती शैम्पू अगेरा-वगेरा बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है जो की देखने में काफी सुंदर पेन भी मिलता है।